पीछे एक दरवाजा भी खोला हुआ है।

पीछे में बहुत सारे पर्दे भी है।

बहुत सारे लोहे के रोड्स भी है।

जिसके अंदर कई सारे मिठास रखे हुए हैं।

जिसमें कई सारी कुर्सियाँ रखे हुए है।

बिल्डिंग्स के नीचे कई सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं।

ऊपर में लाइट्स भी लगे हुए हैं और एक पंखा भी हैं।

दो कुर्सियां भी रखा हुआ है।

कुर्सी के ऊपर दो इंसान बैठे हुए हैं।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

नदी के ऊपर कई सारे छिया भी है।

इंसाने भी है। लाइट्स भी है। खिड़कियां भी है। एक गरी भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक दुकान दिख रही है।

जैसे की चिप्स अंडे बहोत सारे चॉकलेट के डब्बे भी है।